बैनर के ऊपर डी_एस कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ दिख रहा है।

फर्नीचर लकड़ी का बना हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर चार्जर भी दिखाई दे रहा है।

दीवार पर पिंक कलर दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर रास्ता दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर पुरुष और महिलाएं दिख रहे हैं।

पुरुषों ने पैंट और शर्ट पहना हुआ है।

एक पुरुष के कंधे पर बैग दीक रहा है।

मुझे यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा हैं।

मुझे यहां पर एक ठेला दिखाई दे रहा है।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

सभी ने एक जैसा ड्रेस पहना हुआ है।